काफी जगह में बना हुआ दिख रहा है और पर्सन कुछ वर्क कर रहा है जिसने मास्क पहन रखा है कुछ लाइट वगैरा चलती हुई दिख रही है।

और आसपास में काफी पर्सन दिख रहे है खड़े हुए कुछ देखने के लिए यहाँ पर कुछ फक्शन -ए और आसपास में आसमान दिख रहा है जो ब्लू कलर में दिख रहा है कुछ व्हाइट कलर के बादल भी दिख रहे है।

और आस पास में यहां पर कुछ बिल्डिंग वगैरा दिख रही है। बिल्डिंग का पेंटिंग कलर वाइट कलर दिख रहा है। और कुछ खम्भे वैराग दिख रहा है। और आसमान दिख रहा है आसमान ब्लू कलर में दिख रहा है।

कुछ ऑरेंज कलर दिख रहा है और उसके बाद पेंटिंग है कुछ ब्लू कलर में पोस्टर है उसे पर वाइट कलर में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है सामने गेट दिख रहा है।

इसमें कुछ बच्चे वगैरह बैठे हुए दिख रहे है बच्चों ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहेन रखी है और उसने चुन्नी बांध रखि हे कमर के अंदर जो ऑरेंज कलर की है और यहां पर एक पंखा दिख रहा है लगा हुआ जो ब्लैक कलर में दिख रहे है।

और बिल्डिंग का पेंटिंग कलर जो है वाइट कलर दिख रहा है यहाँ पर टीचर खड़ा हुआ दिख रहा है उसने भी वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है कुछ चेहरे रखी हुई दिख रही है जो रेड कलर की दिख रही है नीचे मेड विछे--

यहां पर एक स्टेचू बना हुआ दिख रहा है काफी ऊंचा है और यहां पर आसपास में कुछ पानी भरा हुआ दिख रहा है और यहां पर कुछ पेड़ दिख रहे है पेड़ ग्रीन कलर में दिख रहे है और आसमान दिख रहा है आसमान ब्लू कलर में दिख रहा है। और काफी यहाँ पर --

आसमान कुछ ब्लू कलर में दिख रहा है वह छोटे-छोटे यहां पर घर वगैरा दिख रहे हैं कुछ और टिन के पत्रे लगे हुए दिख रहे हैं यहां पर कुछ जालि वगैरह दिख--